हमरे को इस इमेज के अन्दर --

बहुत सारी अलग-अलग छोटे-छोटे चीजे रखे हुए हैं ।

पीले कलर का बंधा हुआ है और लाल कलर का भी कुछ बंधा हुआ है और गाड़िये का टैंक का कलर गोल्डन है।

और एक बाहर की तरफ एक सफ़ेद लाइट की लाइट जल रही है ।

ब्यूटी पार्लर की शॉप है।

हमरे सामने जो इमेज नजर आ रही है --

गाड़ी चल रही है। गाड़ी चलाने वाला लड़का है मर्द है।

इमेज के अंदर एक मंदिर बन रहा है ।